अउर सामने एक कुर्सी अउर मेज दिखाई दे रही है।

बेड पर पीले कलर की बेडशीट बिछाई हुई है।

दुकान के अंदर गोभी टमाटर हरी मिर्च बहुत सी सब्जियां रखी हुई हैं।

आउर दुकान के अंदर पीले सफेद आउर ब्लैक कलर के गुब्बारें लगाए हुए हैं।

साइड में एक कांडा भी रखा हुआ है।

यह एक बहुत सुंदर सदर अस्पताल है।

आउर साइड में हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

प्लेट में बहुत से परांठे रखे हुए हैं।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

आउर साइड में कुछ डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

कॉलेज के अंदर गुलाबी कलर का पेंट हो रखा है।

यह एक बहुत सुंदर नहर है।

और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

और सामने की साइड एक पर्दा टंगा हुआ है।

खेत के अंदर बहुत सुंदर हरी भरी सिरसों दिखाई दे रही है।

यह एक बहुत सुंदर दुकान है।

ग्राउंड के अंदर बहुत से लड़के अऊर एक टीचर दिखाई दे रहा है।

जिसे फूलों से सजाया हुआ हैं और साइड में पंखे भी लगे हुए हैं।

और मशीन के ऊपर एक व्यक्ति का हाथ दिखाई दे रहा है।

इसने नीले कलर का ग्लव्स पहना हुआ है।

यह एक बहुत सुंदर स्थल है स्थल के अंदर कार्य चल रहा है।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

दुकान के अंदर बहुत सी कुर्सियां अउर अन्य सामान रखे हुए है।

रास्ते में बहुत से पुरुष और महिला लाइन में खड़े हुई हैं।

दुकान के अंदर बहुत अच्छे अच्छे खिलौने रखे हुए हैं।

यह एक बहुत सुंदर स्कूल है।